जिसमें पांच खिलाड़ी खेलते हुए दिखाई दे रहे--

एक रात का समय भी दिखाई दे रहा--

जिसमें चार कुत्ते दिखाई दे रहे हैं।

कुत्तों के पीछे एक गाय भी बंधी हुई है।

और साइड में एक पंप दिखाई दे रहा है दिन का समय है।

कुछ पारक में लाल रंग की कुर्सियाँ भीं डली हुई है।

जिसमें खिलाड़ी खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं।

सड़क के किनारे तीन गाड़ियां खड़ी हुई हैं।

रात का समय है स्टेज सजा हुआ दिखाई दे रहा है।

मरीज़ो का चेकअप करता हुआ दिखाई दे रहा है।

उसके बाहर तीन पार्किंग में गाड़ी खड़ी हुई है।

एक क्लब की फोटो दिखाई दे रही है।

जो की मंदिर की सफाई करता हुआ दिखाई दे--

ऑफिस के अंदर पांच कुर्सियां भी दिखाई दे रही हैं।

डिब्बों में बहोत सारी चप्पलें दिखाई दे रही हैं।

उसके साइड में भी एक बच्चों की दुकान दिखाई दे रही है।

रोड के पास बहुत सारी छोटी छोटी साइकिले दिखाई दे रही है।

जहां बच्चे अपनी बाइक पार्क करते हुए दिखाई दे रहे है।

सप्रे करता हुआ दिखाई दे रहा है।

जो ये पिक्चर पबजी की लग रही है रात का समय--